ओकरा बाद यहाँ गाछी लागल बा फूल ये सन्नाटा बा।

अ बड़ी सुंदर मंदिर लागत देख के जय हो गणेश बाबा।

वही पेट्रोल पंप के हे फोटो दिन के।